ऊपर की तरफ बहोत बड़ी बड़ी टाइले लगी हुई है और बहुत बड़ी बड़ी टीन लगी हुई है।

और बहोत सारे मजदूर नीचे बैठे हुए हैं नीचे उनके सिर पर टोपी भी लगी हुई दिख रही है।

इस फोटो में सामने एक बड़ा सा मॉनिटर दिख रहा है जिसके आगे कुछ मशीन रखी हुई हैं।

दरवाजे पर एक मैट भी दिख रही है जो लटकी हुई है नीचे की तरफ बड़ी बड़ी घास और पेड़ दिख रहे हैं।

फोटो में सामने एक घर दिखाया है जिसके ऊपर काझी अरशद मसूद लिखा हुआ है।

सामने कुछ बालकों की खेलने के समान लगे हुए हैं ग्राउंड में जोकि अलग अलग तरीके के झूले लगे हुए हैं।

मेजों में लगी हुई कुछ दवाइयां दिख रही है जो अलग अलग तरीके की दवाइयां है।

कुछ पेड़ दिख रहे हैं एक पेड़ आम का दिख रहा है पीछे की तरफ घर पर लगे हुए पेड़ और दिख रहे हैं।

इसमें कुछ कट्टे रखे हुए दिखाए गए हैं जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं और कुछ कट्टे आधे भरे हुए हैं और कुछ आधे खाली हैं।

बहोत सारी वाइन रखी हुई है और व्हिस्की रखी हुई है।

से के तरफ एक बड़ी सी टीन दिख रही है और एक गेट जो सफेद रंग का है उस पर एक बोर्ड लगा हुआ है।

सामने एक रूम दिखाई दे रहा है जिसके अन्दर कुछ आदमी भी मौजूद हैं।

इस फोटो में सामने फ्रूट की बड़ी बड़ी क्रेट रखी हुई दिख रही हैं जो की अलमारियों में जमी हुई हैं।

कुछ बेल उनके ऊपर लटकी हुई है सामने एक छबड़ा रखा हुआ दिख रहा है।

इस फोटो में सामने कुछ खाने पीने का सामान रखा हुआ है।

सामने कुछ बड़े बड़े कैक्टस दिख रहे हैं जिनमें कुछ बड़े बड़े गमले दिख रहे हैं।

सामने बेड पर पड़ी हुई एक पन्नी दिख रही है और एक बैग रखा हुआ है और कुछ तकिया रखे हुए हैं।

इस फोटो में सामने कुछ मजदूर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एक लेंटर डालने का काम कर रहे हैं।

सामने एक लड़के ने तेमन बांध रखा है नीचे एक बड़ी सी फावड़ा पड़ा हुआ है।

दवाइयों के बॉक्स रखे हुए दिखाई दे रहे हैं जो रैक में जमे हुए हैं।

इस फोटो में सामने कुछ बच्चे कुछ प्रोग्राम में नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक लड़का चट्टान के ऊपर खड़ा हुआ है जिसका शूज दिख रहा है।

इस फोटो में सामने कुछ कुर्सियां जमी हुई दिखाई दे रही हैं जो की हॉल के अंदर रखी हुई है।